और वाशरूम के साथ में यहां पे अलमारी है रिमोट एल_सी_डी का रखा है।

इसमें रस्सी है पास में एक टेंपू खड़ा है।

यहां पर खंभे भी लगे हुए हैं कुछ पेड़ पौधे हैं।

ऊपर पहाड़ों पर भी लोग बैठे हुए हैं।

इस शॉप में किताबें रखी हुई है।

यहां पर ग्राउंड है यहां पर पेड़ पौधे हैं।

लड़कियों के लोवर लटके हुए हैं गत्तों के बॉक्स रखे हुए हैं।